यख पणा कई सारा हरयां-भरयां डाला छन यख पणा कुछ देओदार का डाला छन यख पणा कुछ बुरांश का डाला छन।

आ एक हरयूं भरयुं डुकरु छ दिखेण लग्युं यख फणा भिंडी का डाला छा उग्यां ।

यख फुणु एक फूल कू गुलदस्ता छा यख फणा रंग बिरंगा फूल छन ये गुलदस्ता पर लग्यां।

यख फुणु यी पर टीन कू छपर छा लग्युं यख फण दीवाल मा जी कई सारा पोस्टर छन लग्यां।

खिड़कियों फणा कांच छन लग्यां यख फणा कई सारा छोटा छोटा पौधा छन यख फणी रेलिंग छा यख फणा हरयां भरयां डाला भी छन दिखेण लग्यां पिछाड़ी एक बड़ु बारिकु डालू छा।

यख फणि एक कैंची छा रखीं यख फणा एक गुच्छा छ बणायु यख फणा पत्ता छन यु फणा ये पर काट्यां छन कुछ यख फणा दीवाल मा जी पीलू रंग छ होयुं।